नदी है नदी के अंदर बहुत सारे चिड़िया दिख रहे है अ-जो मछली को पकड़ने होंगे ऊपर अ-बादल अ-क्लाउडी भी है और कही-कही साफ भी हैं।

और वः-- उसपे लाइट लगी हुई है आसमान दिख रहा है सामने एक और बिल्डिंग--

और दोनों तरफ पेड़ भी है और ये थोड़ा सा अच्छा लुक है।

और इस ये जो बिल्डिंग है बिल्डिंग को मल्टी कलर से पेटिग किया गया है सामने का जो सोलीग है वो रेड कलर से किया गया है ।